वाल में जो चिपकाए हुए फ्रेम बहुत सुंदर तरीका से और यह रूम को एनहांस कर रहे हैं।

इस फोटो पर हमें एक आउटडोर एजुकेशन प्रेक्टिस देखने को मिल रहा है।

बहुत सारे बच्चे हमे साथ में बैठे हुए देखने को मिल रहा है।

मोबाइल्स और यहाँ व्हाइट और ब्लैक कलर के बैलून से इस जगह को अच्छी तरह से सजाया गया है।

जंगल हमें देखने को मिल रहा है।

ओवर क्राउडेड एरिया में से एक है ये जगह।

बहुत सारे बच्चे को नॉलेज देते हुए हमें देखने को मिल रहा है।

इस पर बहुत सारा चीज हमें देख लिखा हुआ देखने को मिल रहा है।

बहुत सारे सामान यहां पर अच्छी तरह तरीका से रखें हमें देखने को मिल रहे हैं।

और काउंटर पर क्यू_आर कोड हमे देखने को मिल रहा है और एक चेयर भी वहां हमें देखने को मिल रहा है।

इस पिक्चर पर हमें एक गेम साइट दिखाया गया है।

में एक ब्लू कलर की डस्टबिन भी देखने को मिल रहा है और ये जो एक हिली एरिया है ऐसा लग रहा है।

ये एक कार शोरूम है जहां में बहुत सारे कार रखे जाते हैं।

पीछे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्रीनरीज़ एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई गई है जिसका फ्रंट में ग्लास टावर है जो की ब्लू कलर में है।

पेड़ पौध हमें देखने को मिल रहा है और वहां एक मंदिर भी हमें देखने को मिल रहा है।

इसमें अलग अलग कलर से पेंट किया गया है।

यहां हमें एक इंडस्ट्रियल --

इसपर लिखा हुआ है वेलकम टू ईटानगर ।

और ये फुल गार्डन बोला जाता है जोकि हम इंडियन लोग बहुतयूज करता है।

उसका आगे में एक बस हमें देखने को मिल रहा है।

ये पिक्चर में एक रेस्टोरेंट का जगह दिखाया गया है।

इस फोटो पर हमें जिम इक्विपमेंट देखने को मिल रहा है।